यहां चारों तरफ बहुत ही सारे लड़के जेंट्स एंड बुजुर्ग--

जो की अभी अभी नया बना हुआ हैं एंड बाहर में काफी सारे--

हेलो गाइस मैं देख पा रही हूं कि ये एक झरना है जो कि बहुत ही प्यारा नजारा दिखाई दे रहा है।

जो कि नीचे फर्श पर रखा हुआ है पैरदान वगैरह एंड ब्लैंकेट वगैरह रखा हुआ है।

हेलो गाइस तो मैं देख पा रही हूं ये एक इलेक्ट्रिक दुकान दिखाई दे रहा है जिसका नाम है।

एंड बाहर में कार्टून में फ्रिज वगैरह कुछ कुछ रखा हुआ है एंड बाहर में गाड़िया पार्क हुई हैं।

एंड दो चार लोग यहां पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा है साइट पे कार हैं एक साइट ट्रैक्टर खड़ी दिखाई दे--

हॅलो गाइज मैं देख पा रही हूँ ये एक रूम हैं जो की फ्लावर्स से बहोत ही प्यारा डेकोरेशन किया गया हैं।

ये एक चौपाटी की तरह दिखाई दे रहा है।